दुकान है और दुकान में हर एक सामान है और तेल-उल सामने में रखा हुआ और चीनी है ।

दूर-दूर तक घर है और एक व्हाइट कलर का है घर और एक ठो ऑरेंज है एक ठो पर्पल कलर का है ।

बच्चा लोग उसमें बहुत सारे हैं खेल रहे हैं और सब अपने-अपने बच्चे को खिला रहे हैं ।

और ठहरने के लिए रूम - उम भी है सब लोग खड़े हो सकते हैं।

और बहुत बड़ा इसका खिड़की है। व्हाइट कलर का घर है और दरवाजा बहुत बड़ा है।

और विवो लिखा हुआ है और रेलिंग रेलिंग पर कपड़ो का पसरा हुआ है।

लाइट -उट और लोग हैं खड़े और एक कलर घर का बोहोत अच्छा लग रहा है। ग्रीन कलर का है।

और ऊपर अच्छा सा डिज़ाइन में सजा हुआ है अंगूर है ।

और तीनठो गेट बना हुआ हैं उसमें बहुत अच्छा सजा हुआ छोटा-छोटा बाल लगा हुआ है ।

टेबल लगा हुआ है है और उसके कपड़ा ओढ़ा हुआ है और नीचे --